बहुत चट्टान से घिरे हुए हैं।

यह एक किराना स्टोर है जहां पे एक लड़का एक लड़की लोग सामान ले रहे हैं।

साइड एक बोड लगा हुआ है।

दुकान में अ संतरा का जूसर मशीन भी रखा गया है उसके साइड में पानी का बोतल भी है।

बल्ब भी लगे हुए हैं।

यह एक मछली का दुकान है जहां पे एक महिला मछली बेच रही है।

ओना शायद केकड़ा भी रखे गए है।

और शायद पंखा भी लगे हु लगाए हुए हैं ।

यह एक गोदाम का तस्वीर है।

योगा करने के लिए वो लोग एक मेप भी बिछाए हुए हैं।

पे तीन वर्कर काम कर रहे हैं।

यह एक स्कूल का तस्वीर है यहां पर बच्चे बच्चियों दोनों प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

पिछे साइड एक पिंजरा भी रखा गया है।

जहां पे आगे साइड एक फूलों का बहुत ही अच्छा गेट बना हुआ है।

इसमें बगल में होटल मधुबन है।

यह एक झरना का तस्वीर है।

नीचे यह झरना में बहुत आदमी नहा रहे हैं।

पीछे शायद एक रोड में एक महिला जा रही है।

यह एक सब्जी दुकान हैजहां पे बहुत सारे सब्जी रखा गया है।